ऑटो बाइक्स सभी निकल रहे हैं बहोत सारे लोग पैदल भी--

सामान व्हाइट कलर की बोरियों में भड़ा भरा पड़ा हुआ है पीछे की तरफ भी बहोत से सलिए लगे हैं बहुत सा सामान--

आस पास रोड है रोड से बहोत से लोग आगे की तरफ जा रहे हैं।

सामने जो दीवार है वो ब्राउन कलर का बना है पूरा शॉप है अंदर की तरफ यहां पे बहोत सारे--

बाउंड्री वॉल बनी है कुछ कॉलम्स हैं और बीच में जहां जगह है वहां पे बहोत से लोग बैठे हुए--

और पूरा यहां पे घास लगी हुई है और पेड़--

पहाड़ की डिजाइन में डिजाइन बनी हुई है दूसरी तरफ--

यह कुछ घास लगी हुई है यह एक रोड है और पीछे की तरफ से कुछ बाइक निकल रही है।

और एक और बिल्डिंग व्हाइट है उसपे येलो कलर का पोस्टर लगा है सामने की तरफ बहोत सारे गमले रखे जिसमें पौधे लगे--